बिटिया के फोटो है जिसमें के बीस पच्चीस बा लोग हैआगे पीछे बहुत सारा झोपड़ी है जिस पर एगो बाइक है एगो --

एक खिड़की है इसमें दरवाजा है एक फ्रिज रखा हुआ है कोने में |